बकरी के बच्चे का रंग सफ़ेद है पीछे से काला है घास का रंग हरा है।

पीछे बड़े पेड़ है पेड़ो का रंग हरा है ऊपर आसमान दिख रहा है जिसका रंग सफ़ेद है।

यहाँ पर एक तालाब है तालाब में बहुत सारा पानी है।

पानी का रंग काला है आधे तालाब में पत्ते उगे हुए दिख रहे है पत्तो का रंग हरा दिख रहा है।

पत्तो में फूल भी लगे हुए है तालाब के किनारे पर पेड़ दिख रहे है जिनका रंग हरा दिख रहा है।

यहाँ पर एक तालाब है तालाब में पानी है पानी का कलर काला है।

यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है तालाब में बहुत सारा पानी है।

तालाब के किनारे एक बड़ा सा पत्थर है पत्थर का रंग सफ़ेद है।

घास उगी हुई दिख रही है आसमान दिख रहा है इसका कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है।